ऊपर दिखाए गए चित्र में गेटों को कागजों से सजाया गया है।

मकान के दीवार का रंग सफेद है।

ऊपर दिखाए गए चित्र में एक हरे रंग का गेट दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में छत का रंग लाल नजर आ रहा है।

ऊपर दिखाए गए चित्र में कई सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में तीन आदमी नजर आ रहे हैं।

ऊपर दिखाए गए चित्र में दो कुर्सियां नजर आ रही है।

इस चित्र में एक लाल रंग का गेट दिखाई दे रहा है।

दो प्लेटो पर फ्राई राइस रखा हुआ है।

इस चित्र में दो आदमिया नजर आ रहे हैं।

यह चित्र एक मंदिर की है।

इस चित्र में एक पक्षी दिखाई दे रहा है।

महिला ने साड़ी पहनी हुई है।

इस चित्र में कई सारे गाड़ियां नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में तालाब के बगल में बहोत सारे मकान हैं।

ऊपर दिखाए गए चित्र में एक पेड़ नजर आ रहा है।

यह चित्रा एक पेंटिंग की है।

इस चित्र में कई सारे लोग बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं।

यह चित्र एक बुक स्टोर की है।

बुक स्टोर का नाम विद्यासागर बुक प्वाइंट है।

इस चित्र में कई सारे आदमियां है।

आइना दिल के आकार का दिखाई पड़ता है।

ऊपर दिखाए गए चित्र में एक गुलाबी रंग का घड़ी नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक मकान दिखाई दे रहा है।

ऊपर दिखाए गए चित्र में कई सारे गाड़ियां नजर आ रहे हैं।

जिम में एक घड़ी दिखाई दे रही है।

यह चित्र एक सड़क की है।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

एक बाइक दिखाई दे रही--